स्वादिष्ट परोठा बना हुआ हैं।

एक रोड है जहां की रेलवे ढाला के पास होता है।

ये मानसरोवर स्टोर स्टेशनरी दुकान है ।

दो पोल के बीच एकदम गेट बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन है।

ये कोई प्लांट बन रहा है पुला बन रहा है जिसमें की काफी सारे लेबरस् काम कर रहे है और ब्रिज टाइप का खड़ा किया हुआ है काफी लंबा नजर आ रहा है।